और पीछे की और कुछ खंभे भी लगे हुए हैं और यहां पर कुछ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं।

यह एक चर्च है और चर्च की अन्दर यीशु मसीह का एक चित्र दिखाई दे रहा है।

और पीछे काउंटर पर कुछ किताबें भी रखी हुई है।

बस के नीचे काले कलर का तार पड़ा हुआ है।

साथ में ही यहां पर फूलों से डेकोरेशन भी किया हुआ है।

उस ग्राउंड के पीछे एक पवन चक्की लगी है जो हवा के वजह से चलती है।

और यहां पर एक नहर भी बनी हुई है नहर के पीछे एक पहाड़ी भी बनी हुई है।

साथ ही इसकी मैट सफेद कलर की बनी हुई है जो की लाल कलर की पट्टी सी लगी हुई है।

साथ में ही इसकी दीवार पूरी तरह से सफेद कलर की बनी हुई है।

साथ में ही यहां पर कुछ प्लास्टिक का समान भी रखा हुआ है।

साथ में ही यहां पर काफी सारे पेन भी रखे हुए हैं।

यह एक कपड़ों का शोरूम है और इसके यहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

यह एक ऑफिस है और यहां पर ब्लैक कलर की काफी सारी कुर्सियां रखी हुई है।

साथ में ही एक महिला भी दिखाई दे रही है जो कि बुर्खा पहने हुए हैं।